बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो ग्रीन एंड ब्राउन कलर के है।

बहुत सारे व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं जो कि यहाँ पे महिलाएं और पुरुष दोनों है।

यहां पे दुकान के बाहर का दृश्य है तथा यहां पे बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो महिला एंड पुरुष दोनों है और बच्चे हैं तथा यहां पे एक व्यक्ति का शर्ट का कलर है ब्लैक तथा उसके हाथ में दूध वगैरा हैं जो व्हाइट कलर का--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

येलो कलर का टीशर्ट पहना हुआ है और बाइक का कलर ब्लैक है तथा यहां पे पेट्रोल पंप का कलर है पीला व्हाइट और ऑरेंज और ब्लू तथा यहां पे बाहर में एक टेंपो भी दिखाई दे रहा है।

और वाइट और पीला तथा इसके ऊपर बहुत सारे स्पीकर बड़े बड़े लगे हैं जो ब्लैक कलर का है।

उसका शर्ट का कलर गुलाबी है तथा एक और व्यक्ति सीसा मे दिखाई दे रहा है जो हरा कलर का टी शर्ट पहने हुआ है।

एक व्यक्ति का शर्ट का कलर ब्लैक एंड व्हाइट है और पैंट का कलर ब्लैक है।

बाइक का कलर है रेड और उस पे दो मिरर भी है जो रेड कलर है।

पर मैं एक बोर्ड भी है जो एयरटेल फोर जी लिखा गया है जो ब्लू और वाइट और गुलाबी कलर में।

और यहाँ पे लकड़ी की मदद से टेबुल और कुर्सी बनाया गया है जो ब्लैक कलर का है और टेबुल का कलर व्हाइट है।

एक व्यक्ति जार उतारते हुए दिखाई दे रहा है जो जार का कलर ब्लैक एंड ऑरेंज है तथा उसके ऊपर सीढ़ी के ऊपर दो जार भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक तेल फैक्ट्री के अंदर का दृश्य है तथा यहां पे बहुत सारे छोटे छोटे कंटेनर में तेल पैक है जिसके ऊपर लोगो भी लगा हुआ है जो पीला और ऑरेंज कलर का है।

बगल में एक शटर भी है जो लोहे की मदद से बनाया गया है।

यह एक बहुत सारे हिरण का दृश्य है तथा इस हिरण के ऊपर सिंह भी दो लगे हुए हैं और इस हिरण के चार पैर हैं।

पीछे में एक जाली का लोहे की मदद से जाली बनाया गया है जिसका कलर व्हाइट है।

सामने में एक ग्रिल का गेट बना है जो लोहे के मदद से तथा उसका कलर व्हाइट एंड ब्लैक है।

यह एक लकड़ी से बने हुए कुर्सी का और सोफे का दृश्य है तथा यहां पे लकड़ी के मदद से बनाए गए हैं और इस पे कई प्रकार के डिजाइन भी हैं जो ब्राउन कलर के हैं और हल्का ग्रे कलर का है।

पीछे चक्के भी है लगे जो ब्लैक कलर के हैं तथा उसका पे शीशा है शीशे का कलर व्हाइट है उस पे बहुत सारे खिड़की भी है।

पीछे में भी बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर भी हैं और बड़ी बड़ी चट्टान नीचे भी है।

और एक टायर भी दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है।

थल का कलर ब्राउन एंड ब्लैक है और इसपे काई भी जमे हुए हैं।

उसके बगल में पानी भी दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है।

सामने में एक घर भी दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर खिड़की भी है।

ये बहुत ही लंबा और चौड़ा में फैला हुआ है जिसका कलर ग्रे और वाइट है।